और बड़ी वाली जो वाइट कलर की है कूछ और बिल्डिंग्स है पुल्स दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा साफ है हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक ऑटो है एक बाइक दिखाई दे रही है इसमें एक सवार जा रहे है कुछ गाडियां है वहाँ कुछ पोल्स दिखाई दे रही है।

कुछ फूल्स नजर आ रहे हैं हरी-भरी घांस नजर आ रहे है बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं एक सामने में बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं ।

पंप नज़र आ रहा है रोड नज़र आ रहा है कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे है दो व्यक्ति एक गाड़ी के ऊपर सवार हो कर जा रहे है एक टेम्पो नज़र आ रहा है व्हाइट कलर का --

कुछ पेड-पौधे नज़र आ रहे है इलेक्ट्रिक वायर का पोल नज़र आ रहा है और आकाश साफ दिख रहा है।